यहाँ पर बोर्ड हेगा का बोर्ड के साइड मे काफि सारे दुकाने बनी हुई हैंगी।

स्कूटी है मोटरसाइकिल हेगी अभी रात है तो यहाँ पर लाइट जल रही हेगी लाइट की रोशनी हो रही हेगी काफी सारी लाइट लगी हेगी रोड मे।

जो कि ब्लैक कलर कि हैं साइड मे पेड दिया गया हैं और सामने रोड हैं जहाँ पे बीच मे बाउंड्री बनी हुई हैं रोड के।

ये मोमोज की दुकान है यहाँ पर मोमोज का पोस्टर भी लगा हुआ है और निचे मोमोज के बर्तन रखे हुए है।